यह एक पत्ते के अंदर काफी सारे जेवर का काम चलते हैं और यह काफी सुंदर जेवर --

क्योंकि पैसा के बिना कुछ भी नहीं होता --

यह एक घूमने का बहोत ही सुन्दर जगह है और इस जगह पर एक बहोत ही खुशी हुए से खड़े हुए है।

इस जगह का बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया होगा और --

काफी सारे हरे-भरे पेड़-पौधे भी दिख रहे है और साइड साइड में बहुत सारी बिल्डिंग्स भी है।

यह एक बहुत ही अच्छा जगह है डेकोरेट बहुत ही सुन्दर और अच्छे तरीके से किया गया है यहाँ काफी लोग है --

और आने-जाने मे भी कोई परेशानी नही होती है इस और रोड पे आमने-सामने बहुत से पेड़-पौधे लगे हुए है जो पर्यावरण के लिए बहुत ही सुन्दर --

यह एक बहुत ही बड़ी है और इस एक आदमी है जो इस भगवान को --